इस फोटो में मुझे एक पुल दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारे कार्टून दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे फुगे की सजावटे दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे जंगल दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे कुछ केक दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे एक ट्रांसफॉरम दिखाई दे रहा हैं।